यहां पे हमें कुछ बाईकें और स्कूटियां भी दिखाई--

जहां पे जिम की फ्लोर का कलर --

है और साथ में दो सोफे भी है जिसका रंग हरा है और एक का रंग ब्राउन --